दो पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक रेड कलर की चेयर भी है।

और एक बड़ा सा पत्थर भी है।

मुझे इसमें एक बहुत बड़ा--

बहोत सारा सोफा दिखाई दे रहा है।

छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा--

मुझे इसमें एक बहुत ब--

मुझे इसमें एक मंदिर दिखाई दे रही--

मुझे इसमें केक बहुत बड़ा--